बहोत व्यक्ति और दो तीन बच्चे खड़े दिखाई दे रहे है।

आगे की तरफ एक छोटा सा मकान और दो छोटे-छोटे मकान नजर आ रहे हैं जो बहोत सुंदर नजारा दिख रहा है।

और कुछ टूट फूट सामान अ नजर आ रहा है साइड मे एक अ मम पनि का टंकी भी साइक |--

गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही हैं सामने नीला आसमान साइड में हरे पेड़ दिखाई दे--

चित्र में नीला आसमान दिखाई दे रहा है साम बीच में एक मूर्ति लगी है आस-पास पेड़ नजर आ रहे है पीछे की तरफ कुछ घर बने दिखाई दे रहे हैं बहोत अँधेरा है छोटे-छोटे पेड़ हरे-हरे नजर आ रहे हैं।